फोटो के अंदर मुझे एक वाइट कलर की बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके ऊपर बहोत सारे झंडे भी लगाए गए हैं।

उनके अंदर चिकनस को फ्राई करके लटकाया गया है।

यहां पर मुझे छत के ऊपर कुछ रंगीन मालाएं भी नजर आ रही है जो सजावट के लिए है।

यह फोटो किसी गोदाम का दिखाई पड़ता है जिसमें जमीन पर बहोत सारे आलू पड़े हुए हैं।

फोटो के अंदर मुझे एक बड़ा सा इलाका दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ मुझे एक पतला सा लंबा पेड़ भी नजर आ रहा है।

यहां पर बैठने के लिए बहोत सारी डायनिंग टेबल्स भी लगाई हुई है।